प्लाम्पिंग पे कूद रही है एक बच्चा है येल्लो कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

स्लाइड है स्लाइड का कलर व्हाइट है बैठने वाला है नीला कलर का--

और एक लड़का है ब्लैक कलर का फुल टी शर्ट पहना हुआ है एक ब्लू कलर का मास्क लगाया हुआ है एक लेडीज़ है।

रूम है रूम के अन्दर बच्चे और एक लेडीज एक्ससाईस कर रे वाइट कलर का चादर बिछाया हुआ है।

वाटर बोतल है कलर यलो रेड है एक लड़की है यलो कलर का टॉप पहनी है ब्लैक कलर का शोर्ट पैन्ट पहनी है।

रूम है रूम का कलर व्हाईट है रेड है दो बल्ब हैं बहुत सारे सीमेंट के बोरे रखे हुए हैं उनपे सीमेंट --

लगा हुआ है कलर यल्लो है वाइट है ब्लू कलर से लिखा हुआ है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है।

ब्लैक कलर का जीन्स पेहनी है लाइट पर्पल टॉप है।

एक लड़का है रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर का सेंडल है।

कंप्यूटर रूम है रूम का कलर व्हाईट है बहुत अच्छे से सजाया गया है बैलून का कलर यलो है ब्लू है रेड है।

डेक्स है डेक्स का कलर ब्राउन है बोहोत सारे कंप्यूटर रखे गये है कंप्यूटर का कलर ब्लैक है।

सब्जी का दूकान है बोहोत सारे सब्जी रखे हुए है शिमला मिर्च है भिन्डी है कॉर्न है चुकुन्दर है।

एक बोर्ड ब्लेंक है पर्दा है पर्दा कलर मेहरून है।

दरवाजा है दरवाजा का कलर व्हाईट है गमला है गमला का कलर ग्रीन है यलो है और एक स्कूटी है ब्लू कलर का।

रूम है रूम का कलर व्हाइट है। ए_सी है कलर व्हाइट है।

मछली मार्केट है मार्केट का कलर पूरा ग्रे है एक लड़का है ब्लैक कलर का फुल टीशर्ट पहना हुआ है।

और एक आदमी है वाइट और ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ है बेठा है।

एक आदमी है वो बच्चो को पड़ा रहा है आदमी ने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

रूम है रूम का कलर ऑरेंज है पर्दा मेहरून है बेड है।

घर है घर का कलर रेड है येलो बॉर्डर है घर के बाहर दो गाय हैं गाय का कलर ब्लैक है व्हाइट है गेट का कलर ब्लू है।

मछली का कलर ब्लैक है ग्रे है वाइट है।

एक आदमी है आदमी ने व्हाइट और ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है बहुत सारे म्यूज़िक बॉक्स रखे हैं कलर ब्लैक है चेयर है चेयर का कलर रेड है।

दुकान है दुकान का कलर येलो है दुकान के बहार बहत सारे बलून लगे हुए है।

टंकी का कलर ब्लैक है रेड कलर का कारपेट है।

तो बच्ची है और एक लेडीज है एक्ससाईस कर रही है कारपेट ओरेंज पिंक है पर्पल है।

दूकान है दूकान का सीसा ब्लैक और वाइट है दूकान के बाहर दो लड़के है एक लड़के ने--

रूम है रूम का कलर वाइट है फर्स वाइट और ब्लैक है दरवाजा ब्लैक है चप्पल ब्राउन है।

बेड है बेड का कलर ब्लैक और वाइट है बेड शीट है बोहोत प्यारा सा--

फ्लावर बना हुआ है फ्लावर का कलर रेड है वाइट है ग्रीन पत्ते है।

खिड़की का कलर ब्लैक है दरवाजे का कलर ब्लैक है अलमारी है अलमारी का कलर ब्राउन है कारपेट है।

कारपेट का कलर नीला है कालीन है कलर रेड है।

ब्लैक है गोल्डन है व्हाईट है टेबल है टेबल का कलर ब्लैक है शीशा है शीशे का कलर व्हाईट है फर्श ब्लैक है।

राखी का दूकान है बोर्ड ब्लू कलर का है वाइट कलर से लिखा हुआ है।

घर है घर का कलर व्हाईट और ग्रीन है दरवाजा ब्लैक है घर के दरवाजे पे बहुत सारे बैलून हैं।

रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है बहुत सारा जिम मशीन है कलर ब्लैक है शीट का कलर ब्लैक है।